एक ब्लैक कलर का पर्दा आधा खुला हुआ है और पीछे से नीली कलर की लाइट भी आ रही है।

यहाँ पर दो स्लाईड हैं यहाँ पर तीन स्लाईड है एक स्लाईड राउंड वाली है।

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होटल हैं जहाँ पर वो।

बहत सारे रूम होते हैं यहाँ पे एक रूम का नंबर ।

आंटी जी एक्सीडेंट कर ली हे जिन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन के रखी हुई है।

उसने नीचे लाल कलर का घाघरा पहन के रखी है।

सब्जियाँ रखी हुई हैं एक अंकल वही सब्जी को बेच रहे हैं।

ल लटका हुआ है और वहां पे पेड़ पौधे--

क्लासरूम है यहाँ पर टेबल और कुर्सी।

यह घड़ी की दुकान है यहाँ पर बेहद खूबसूरत घड़ी है घड़ी पे बहुत सारे कलर है किसी का काला कलर है किसी का पीला कलर --

एक गाड़ी अलग एक कांच के शीशे में अंदर रखी गयी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो खिचवा रहे हैं और कुछ दो अंकल ।

बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं पीछे भगवान की मूर्ति हैं।

बहुत सारी लाइन है और पीछे घर दिख रहा है और यहाँ पर।

येलो कलर के कपड़े और पिंक कलर का ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का ग्रीन कलर ब्लू कलर का रेड कलर का --

दो इंसान बैठे हुए हैं उन्होंने ब्लैक कलर के पहन के रखे है और आजू।